आआ तनिक हरियाली दिखने को मिल रही है। आ फील्ड है। फील्ड में काफी घास है।

अ चिप्स दिख रहा है। अ टॉफी दिख रहा है। पाव दिख रहा है। शैम्पू दिख रहा है। चायपत्ती दिख रही है। बाल में लगाने वाला तेल इत्यादि दिख --

पीछे की तरफ हॉर्लिक्स बोर्नवीटा इत्यादि रखे हुए है तथा --

पंकज बुक डिपो के नाम से है।